शर्ट का कलर व्हाइट है और एक स्वेटर पहने हुए हैं चप्पल पहने हुए हैं और अ इसका जो पीछे का जो घर है उसका रंग व्हाइट है --

ये एक बहुत बड़ा-सा सुरंग है जिसमें बहुत सारा आदमी खड़े है। ऊपर में कुछ ढूंढ रहे हैं शायद वो लोग और कुछ गमछे पहने हुए हैं।

और पोस्टर में रेड कलर का कुछ ऐसे लिखा हुआ है और एक आदमी भी नजर आ रहा है।

यह एक रोड हैं जिस में बहुत से आगे में बहुत से गाड़ी रुके हुए हैं मोटरसाइकिल स्कूटी वगेरे हैं और दो आ तीन आदमी इधर से उधर टहल रहे हैं। पी--

और बहुत सारे तरह-तरह के सामाने नजर आ रहे हैं। दुकान में और काफी तेज धूप भी पड़ रही--